अंदर में काउंटर बनाया हुआ है काउंटर के पास एक आदमीन खड़ा है।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

ऊपर एक घर का दृश्य दिख रहा है एक गाय है जो ब्लैक कलर की है और वाइट कलर की है।

बगल में कई सारे नारियल का पेड़ लगाया हुआ है।

बगल में रोड है ऊपर से धूप भी आ रही है।

सामने एक बड़ा सा पोस्टर लगाया हुआ है पीले कलर का।